मुझे इस चित्र मे एक मेडिकल स्टोर दिख रहा है।

और मेडिकल स्टोर मे कुछ लोग दवा खरीद रहे हैं।

हमको इस पिंजड़े में एक शेर दिख रहा है लेकिन--

लेकिन मिश्रा जी के कहने पर हम उनका कहना मान रहे थे लेकिन सी_ओ बोले रेनबसेरा में ही चलो--

मुझे इस चित्र में बहोत साफ सुथरा एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

और इधर कुछ लोग किराने का सामान खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं।

मुझे इस चित्र में बढ़िया बेडरुम दिख रहा है।

और पानी पीने के लिए बिसलेरी का बोतल भी रखा गया है।

और कांच का बर्तन भी रखा गया है जो बहोत ही--

मुझे एक श्वेता ट्रैवलिंग छावनी दिख रही है।

मुझे इस चित्र में एक बहोत ही बढ़िया--

और बगल में एक लोहे की पाइप भी गड़ी हुई है।

और यह मार्केट का एक बहुत बड़ी दुकान है।

और सामने प्रवेश करने के लिए दो सीढ़ियां बनाई गई है।

मुझे इस चित्र में एक हाईवे दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक दुकान दिखाई दे रहे है यह दुकान बहोत ही मस्त दुकान है।

रूम दिख रहे हैं जो की बहुत अच्छे लगते हैं।

आगे मंच पर देखकर मीटिंग का हॉल मीटिंग ले रहे हैं।